व्हाइट कलर का है पूरा एक फैन ब्लैक कलर का फैन है।

फूल जैसा कुछ दिख रहा है बहुत सारा बाइकस है विंडो है बड़े बड़े--

दोनों बहुत सारे टैबल है टैबल के ऊपर वो कुछ तो भी अपने पेपर से कुछ बना रहे है।

ऊपर से ऐसी स्काई दिख रहा है एक बड़ी सी जगह पर कुछ तो भी वो स्टोन का बना हुआ है।

शायद सीमेंट से बने है र एक बच्चा उसपे बैठा है एक बच्चा बैठने वाला है--

यह एक स्कूल है स्कूल वैन दिख रही है |

बाकी के दो ब्लैक एक वाइट कार दिख रहै है।

गुप्ता लाउन्ज कर करके इसका नाम है।

महल व्हीकल्स मतलब स्कूटियाँ आदि आप कौन से भी व्हीकल्स इधर से ले सकते हैं।

एक स्कूल है स्कूल छोटे-छोटे बच्चे है।

पेपर के ऊपर कुछ भी डायग्राम निकल के रखी है।

टीचर बच्चों को बड़ी - बड़ी विंडो है एक फैन है।

एक दुकान है दुकान के ऊपर आइस क्रीम लिखा है।

मतलब ऐसे एंजॉयमेंट के लिए कुछ ऐसी प्लेस होंगी वो देखने के --

शायद वो भी को डांस कॉम्पिटिशन में है शायद --

लोग यहाँ एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं उन बड़े-बड़े पत्थरों से--

अलग-अलग लाइटस है फ्लावर्स भी बहुत मस्त है डेकोरेशन भी बहुत मस्त--

अ निरमा वगैरह ऐसे जैसे वह शॉप होती है वैसा ही कुछ दिख रहा हैं।

ए_टी_एम भी है बैंक खुली है वॉचमैन है।

येलो रेड ग्रीन मिक्स वाली साइकिले है।

और पूरा चर्च को डेकोरेशन किया है बैलून से पिंक ब्लू व्हाइट --

एक गार्डन है गार्डन में बहुत सारे पौधे हैं बड़े-बड़े पौधे है ग्रीन ग्रीन कलर के--

उधर भी एक ऐसे बड़ा सा बिल्डिंग जैसा कुछ तो भी दिख रहा है अलग-अलग प्रकार के पोस्टर भी लगे है उस--